यहां पे रंग बिरंगे फूल है लाइट से यहां पे ग्रीन कलर का--

लाल और सफेद फूल है यहां पे कर्टेन व्हाइट कलर का है।

यहां पे बैंक है बैंक के बाहर बहोत सारे लोग हैं यहां पे घास है पेड़ पौधे हैं पत्ते हैं।

यहां पे रंग बिरंगे पौधे हैं फूल है यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।